और यहाँ का व्यू भी आप लोगों को जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा और काफी मस्त देख सकते है यहाँ पे पेड़-पौधा लगा हुआ हरा-भरा और--

ये सदी घर का डेकोरेशन हैं देख सकते हैं।